का दृश्य है जिस में पार्क के सामने से एक रास्ता जा रहा है।

और कुछ बड़े बड़े पेड़ भी शामिल है।

यह मानव द्वारा निर्मित नहाने का तालाब है जिसमें पानी भरा हुआ है और एक युवक भी नहा रहा है।

मूर्ति ने जूते पेहन रखे है और एक हथ को फैलाए हुए है।

इसके सामने कुछ बदरपुर भी पड़ा है।